देखने में काफी सुंदर है।

क्यूंकि लोग इसमें घूमने के लिए बहोत दूर-दूर से लोग आते हैं ताकि सुन्दर दिखे और बहुत सारे प्यारे भी है इस जगह देखने में बहुत सारे प्यारे-प्यारे झूले हैं ।

चौबीस घंटा अवेलेबल होती है और इसके साथ हर एक इंसान को कठनाई की सामना ना करना पड़ता है इसके लिए चौबीस घंटे अवेलेबल होती हैं।

जो की हर एक इंसान को जरूरतमंद पूरा किया --